जंगल दिख रहा है। बादल में कलर दिख रहा है। आसमानी ग्रीन पिंक ब्लैक व्हाइट ऑरेंज कलर दिख रहा है। नी --

एक लड़का दिख रहा है । उसके हाथ में पानी की नलकी दिख रही है । ब्लैक कलर की पानी पौधो में छिताई करती हुई दिख रहा हैं । कीचड़ दिख रही हैं पेड़ पौध दिख रहा हैं फूल देख --

नीचे रोड पर पानी फैला हुआ दिख रहा है कीचड़ दिख रही है आजू बगल में एक लड़का दिख रहा है पेड़ पौधे दिख रहे हैं मकान दिख रहे हैं पहाड़ दिख रही --

घास दिख रहा है। रोड पर पट्टियां बिछी दिख रही है। चाय के फूल दिख रहा। पीले कलर का रोड दिख रहा।

कप दिख रहे हैं। मोमबत्ती दिख रही हैं। अगरबत्ती दिख रहीं। बहोत सारी लाइटें दिख रही हैं।

दिख रहे हैं रोड पे रिक्सा दिख रहे हैं नीलें पिंक मकान दिख रहे हैं बैग वगैरा दिख रहे हैं लड़का दिख रहा है । दिख रहा है--

आगे एक दुपट्टा वगैरा दिख रहा है बैग वगैरा दिख रहे हैं बोतल दिख रही है रोड पर पेड़ पौधे दिख रहे हैं ग्राउंड दिख रहा है मकान --

हाँ एक ए.टी.एम. का बो दिख रहा है बैनर लगा हुआ दिख रहा है दुकान दिख रही है उसमे पिंक कलर दिख रही है दो तीन जेंट्स दिख रहे हैं एक बैठा हुआ दिख --

चद्दर सेट हो रहा है दिख रहा है लेडिस के हाथ में कपड़ा दिख रहा है जेंट्स के हाथ में बैग दिख रहा है रेड कलर दीवालो पे कलर दिख रहा है बादल में कलर दिख रहा हैखेत वगैरह दिख रहे हैं पेड़ --

पर्दे दिख रहे हैं पिंक व्हाइट नीले पीलेकलर के फूल दिख रहे हैं रेड कलर दिख रहे हैं ग्रीन कलर थोडा बोहोत दिख रहा है पिंक व्हाइट कलर थोड़ा दिख रहा है। दो लेडिज़ बैठी दिख--

रोड दिख रहे हैं मकान दिख रहे हैं गेट वगैरह दिख रहे हैं मकान में ग्रीन पीला कलर दिख रहा है गेट खिड़कियाँ दिख रही हैं बोर्ड लगा हुआ दिख --